यहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े हैं और बहुत सारे बाइक भी खड़े हैं।

यहाँ पर ये लोग बोहोत ही अच्छे काम कर रहे हैं। ऊपर ब्रिज का भी माहौल बोहोत अच्छा है। इस पर बहुत स्टीगर लगाया गया --

तीन-चार बिसलेरी का बोतल भी है और एक पोधा भी लगया गया है बीच में --

यह एक प्रकार का ढांचा है जोकि एल्युमीनियम से बनाया गया है।

यह भी चर्च का इमेज है जहाँ पर एक सूदी बनाया गया है।

यह एक रोड है। इसके सामने एक बिल्डिंग्स दिख रहे --

यहाँ के आदमी भी तीन चार आदमी मिल कर के रा मिस्त्री लोग मिल कर के इन ड्रायगरों को बनाया गया हैं।

यहाँ पर एक बस भी हमें खड़ा देख रहा है। यहाँ पर बिल्डिंगस पर बहोत ही अच्छे-अच्छे नज़ारे देखने को मिल रहे।

इस बिलडिंगस के ऊपर एक पीले कलर का वाटर टैंकी भी लगा हुआ है।

ये तो बहोत ही हमारे लिए शुद्ध और बहोत बहोत मस्त महीना माना जा --

ओर ये जगह बहुत ही अच्छा है।

और अलग-अलग तरह के स्ट्राइक बॉल्स लगे हुए हैं। सीढ़ी भी लगाई गये मौत का कुआं है। बहोत ही खतरानाक जगह लग रहा है।

यहाँ पर दोनों साइड तीनो साइड तिरंगा का ही दिख रहा है।

सामने एक दो बिलडिंगस हमे दिख रहे हैं जो कि हरे भरे वातावरण के चलते ये भी खूबसूरत लग रहा है देखने में काफ़ी खूबसूरत देखने में यहाँ का नजारा लग रहा है।

यह एक पार्किंग सड़क का इमेज है जहां पर सामने एक दु --